एक लड़का नहर के किनारे बैठा है बड़ा सा पत्थर है पत्थर पे हरी-हरी थोड़ी सी घांस है।

ये बुको का स्टोर है। ये काले रंग की मेज रखी हुई है। एक आदमी चेयर पे बैठा है।

ये स्पोर्ट की सामानो की दुकान है।

ये बाइके चल रही है बस चल रही है रिक्शे हैं ऑटो हैं साइकिल है बहुत सारी दुकानें है। पैदल भी चल रहे हैं।